कुछ बच्चे मास्क भी लगाए हुए हैं। है।

ऐ कुछ तरफ एक तिरपाल टंगा हुआ है। एक टेंट लगा हुआ है। बहोत सारे --

छाता लिए हुए हैं। कुछ बच्चे भी छाता लिए हुए हैं। कुदाली से जमीन को खोद रहे हैं। पीछे बहोत सारे --

बड़ा-सा गेट है। गेट के बाहर एक छोटा गेट --

खेल का मैदान है।

उम्म घास भी है। झूले का रंग रंग रंगबी उम्म का है।

दीवाल है। ऊपर सीलिंग भी व्हाइट ही रंग का है। नीचे फर्श हरे रंग का है।

कुछ लोहे का सामान है और लकड़ी का भी सामान है सामने --

टावर लगा हुआ है। बड़े बड़े पेड़ हैं। कुछ

एक ठेले पे कुछ सामान बिक रहा है। बहोत सारे दुकान भी --

है और कुछ लोहे नीचे जमीन पर भी बिछाए हुए हैं।